यहां पे एक यह उम्म महल सा बना हुआ है जिसमें अह खंभे लगे हुए हैं अह बहुत सारे।

यह एक पक्षी का पिंजरा बना हुआ है जिसमें एक दो बहोत ही क्यूट सुंदर से पक्षी बंद है और इसमें ब्लू कलर की और यल्लो कलर के दो पक्षी हैं।

और इसके आसपास से पानी की बूँदे पड़ी हुई है।

ये एक अं रोड है जिसमें चार अं मेन खड़े हुए है।

और आस पास एक दो लोग भी खड़े हुए है और ऊपर से व्हाइट व्हाइट कलर का--

की हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इन्होंने बहोत सारे अलग अलग कलर के--

ये एक मकान बना हुआ है और यहां पे एक लोहे का गेट लगा हुआ है।

और ये इसके पास में जिम है जो कई बच्चे यहां पे जिम कर रहे हैं।

और ये पैक है व्हाइट कलर का नीचे टाइल्स लगी हुई है इसके और यह बेचने के लिए हैं।

और यहां डीनर चल रहा है और वहां पे लखने के लिए वेटर लगे हुए है।

पानी के कैंपर लगे हुए हैं और पीछे नाइट का माहौल है।

और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कलर की बकरियां हैं रेड है व्हाइट है ब्लैक है और इनको एक वो है जो इनको--

एक आ अगला क्लीनिक का है अल्ट्रानिक एक जिसे सोनोग्राफी कहते हैं।

उसके पास में एक सिक्स पिन का एक एटीएम लगा हुआ है उसमें--

यह एक यहां पे बारिश की तरह हो रहा है और ये कई सारे मेंबर्स यहां पे खड़े हुए हैं और छत्रियां बनी हुई है।

बहुत ही बड़ा एक लगा हुआ है उसके सामने के एक ग्रीन कलर का पार्क बना हुआ है।

लेडीज साड़ी शोरूम उसके बाहर जो है दो बाइक खड़ी हुई है एक स्टूल लगा हुआ है बहोत बड़ा और आ पास में कुछ कपड़ा--